में भी लगे हुए है स्प्रिट लाइट भी है।

और क्रीम कलर की बेडशीट हैं और चेयर है।

एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है जोकि व्हाईट लोवर और ग्रीन टी शर्ट में--

और काफी सुंदर नजारा है आस पास का।

यहा वाइट फ्लोवेर और रेड फ्लोवेर का कॉम्बिनेशन कर--

माला बनाया गया है और साथ में साथ मे ही गेंदे का भी माला--

यहाँ अ ऑरेंज ग्रीन और व्हाइट कलर के बलूनस लगाए गए है मेन गेट पे जो मेन गेट है जो मेन डोर है।

एक स्कूटी भी खड़ी हुई है और यहा कुछ लोग भी--

और यहां ब्लू कलर की टीन सेट डली हुई है पीछे पेड़ भी है।

दिन का समय है यहां और जो मंदिर है वो वाइट कलर का है।

यहाँं कुछ शॉप है कुछ कपड़ो की शॉप है यहाँं।

और बहोत ही पियारा वातावरण दिख रहा है --

और फस्ट सेकंड केस्ट डिपोसिट और--

यहा काफी हरी भरी घास है चारो तरफ हरियाली--

ये एक नर्सरी का द्श्य प्रतीत हो रहा है।

ये एक जिम का द्श्य है जहा कई सारे लोग--

यहा उपर काफी लाइट्स लगी हुई है।

इनके उपर जो डिजाईन है वो गोल्डन कलर का है।

और बहोत ही सुंदर साड़िया है।

ये एक टी और कॉफ़ी पार्लुर का द्र--

और यहा अलग अलग वेराइटीस की कॉपीस --

बेठ बिछा हुआ है जहा पर कई--

और धियान मुध्रा में बेठे कर धियान भी कर--

ये एक लक्सी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर--

और बहोत ही सुन्दर सा वतावरण यहा दिखाई दे रहा है।